यहां पर बहोत ज्यादा लोग खड़े हैं यहां ऊपर बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं।

एक पलंग पड़ा है पलंग के उपर बेडशीट बिछी हुई है रंगीन कलर की एक माइक पड़ा है बिजली वाले तार पड़े हैं।

रेल की पटरी है यहां पर एक लाल कलर का कुत्ता खड़ा है पीछे दीवार बनी हुई है दीवार के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है।

हरी हरी घास लगी हुई है और बहोत सारे छोटे छोटे बच्चे लड़कियां लड़के खेल रहे हैं।

और बहोत सारे फ्रिज पड़े हैं वाशिंग मशीन पड़ी है टी_वी लगी हुई है ए_सी लगी हुई है कैलेंडर पड़ा है।

दीवारों के ऊपर सफेद कलर किया हुआ है।

नीचे बीच में एक बेंच पड़ी है सफेद कलर की बेंच के ऊपर एक प्लेट और एक गिलास पड़ी है स्टील की।

छोटी छोटी हरी हरी पत्तियां लगी हुई हैं कुछ पत्तियां हरी दिखाई दे रही हैं तो कुछ पत्तियां पीले कलर की दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो के अंदर एक दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं दुकान के अंदर के साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं।